सामने काफी खूबसूरत झरना बह रहा है।

जिसके पीछे बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई हैं।

साइड में बहोत सारी अलमारियां रखी हुई है यह काफी खूबसूरत है।

सामने एक रास्ता बना हुआ है।

यह एक बड़ा सा पार्क एरिया है।